विभन्न-विभिन्न रंग का स्कूटी लगा है।

देखने में ये सब बैटरी वाला स्कूटी जैसा लग रहा है ।

पोखर से बाहर निकलने या अन्दर जाने के लिए ईंटा का सीढ़ी बना हुआ है मंदिर गुलाबी रंग का दीवाल है।

इस बस का रंग सफ़ेद एवं पीला है।